सामने खिड़कियां दिख रही है और सेटल वाला रूम है।

नीचे शर्ट सील कर बहोत सारा रखा हुआ है।

यहां पे पांच छह कुर्सियां लगाई है।

यहां पे बहोत अच्छा से कुर्सी सजाई गई है।

इस कॉलेज के बाहर बहुत सारा फोर व्हीलर लगा हुआ है।

सामने ताड़ का पेड़ है।

में अलमारियां बनाई गई है।